और यहां पर निकर बनियान सब मिलते हैं। ये और देख रहे हैं।

इस तस्बीर मे देख रहे है ये जो तस्वीर है ये तस्वीर एक स्कूल की है। यहाँ पर ये लड़कियाँ कुछ फंक्शन कर रही हैं जिन्होंने साड़ी बांध रखी हैं।

और पीछे काफी सामान है जैसे कि एलोवेरा जेल --

और यहां पर ये घर काफी ही अच्छे घर है नजारा काफी सुंदर है।

रखे हैं और इसी तरह के काफी फल रखे हैं जैसे कि चीकू है और पाइनएप्पल है पाइनएप्पल --

हम भी इस तस्वीर में देख रहे है। ये जो तस्वीर है ये तस्वीर एक मछुवारों की हैं। ये जहां पर ये काफी बोहोत सारे मछलियां रखी हैं।

करा ली है दूसरा कटिंग करा रहा है। ये बड़ा इतरारा है अपनी शीशे में मुंह देख रहा है और पीछे --

और ये सीढ़िया कम से कम एक या दो हजार सीढ़िया --